यह एक कमरे का दृश्य है कमरे में लाइट जल रहे हैं।

नीचे एक गेट भी बना हुआ है गेट के पास बहुत सारे झालर से सजाए हुए हैं और तिरंगे झंडे लगे हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान में बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं रखे गए है जैसे बिस्कुट कुरकुरे मिक्चर और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं।

नीचे में पलस्तरा किया हुआ है दीवार में बहोत सारे वस्तुए टंगे हुए है वह लोहे के हैं।

से स्कूटी ऑटो और भी वाहन चल रहे हैं।

स्टेज के पीछे कपड़ों का मदद से सजा हुआ है।

चारों तरफ से झालर लटके हैं और ट्यूबलाइट भी लगी हुई है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग क्रीम कलर की है बिल्डिंग के दीवार पर एक लाइट भी बंधी हुई है।

बिल्डिंग के आगे एक बड़ी सी ग्राउंड है ग्राउंड में नीचे छोटे छोटे घास लगे हुए है और बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

यहां पर ढेर सारे बड़ी बड़ी मशीने भी रखी हुई हैं।

यह एक क्लास रूम का दृश्य है दीवार का कलर व्हाइट है।